दिल्ली जाते है बम्बई जाते है।

छोटे बड़े बच्चे के कपड़े मिलते हैं।

बच्चों के कपड़े बड़े के कपड़े--

ये मोल दिखाई दे रहा है सब लेने आते हैं कितना सुंदर है।

के वो यहां डी_जे बजता है यहां सब नाच गाना होता है।

ये परचून की दुकान है या सब सामान लेने आते हैं चीनी पत्ती चावल बेसन दाल सब कुछ मिलता है।

कुर्सी भी रखी है प्यारा-प्यारा लग रहा है झंडा दिखाई दे रहा छोटे भी बड़े भी कितना सुंदर दिख रहा --

कुर्सी भी रखी है बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

नमक चीनी शैंपू कंगी--

सब कुछ मिलता हैं सब्जी ले लो परचून का सामान ले लो कुछ भी ले--

सब्जी मंडी है यहां सब्जी मिल रही है फल मिलते है सेब ले लो संतरे ले लो केला ले लो।

मटर पनीर ले लो सब कुछ मिलता है।

पता नहीं कहां जाएगा ये रोड गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है मेट्रो भी चलती है रेल भी चलती है।

खेतों में बीज भी बो रखा है जवार बाजरा गेहूं।